सामने काफी सारे बुक्स नज़र आ रही है ये लोग का बाहर बुक्स लगा कर बैठे हुए है छोटी है चौड़ी है कोई बुक है पतली है।

यहाँ निचे जमीन पर काफी सारे पत्ते है यहाँ सामने चौड़ा सा पेड़ है जिसमे सारे पत्ते लगे हुए है किनारे में बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए है।